नमस्कार सर ये मतलब ओकेस्टरा प्रोग्राम शो है यहाँ पे डी.जे. उजे सब चीज रखा गया है यहाँ पे सभी प्रकार के आदमी आए हुए है शो के लिए |

नमस्कार सर ये टावर है यह एयरटेल का टावर है यहाँ पे बहुत अच्छे से नेट चलती है यहाँ पे एक पेड़-पोधा --.

नमस्कार सर यह दुर्गा मंदिर है यहाँ पे दुर्गा दुर्गा माँ का मतलब मूर्ति बि बैठाया गया है यहाँ पे बहोत अच्छा ही मंदिर बनाया गया है यहाँ पे स --